यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

है हंस का जोड़ा भी हे रखा हुआ है।

पेंटिंग अलग अलग आकृति की है है यह कागज से बनी हुई है।

डब्बे भी रखे हुए हैं जिनके ढक्कन नीले रंग के हैं।

पेड़िया भी दिखाई दे रही है दरवाजा भी दिख रहा है।

यहां पर कुछ आदमी दिख रहे हैं।

टेबल भी दिखाई दे रही है लड़की के हाथ में कुछ दिख रहा है।

दीवार पर सरस्वती माता की फोटो भी लगी है।

खिड़कियां भी दिखाई दे रही है दरवाजे भी दिख रहे हैं।

सबसे ऊपर क्रॉस का निशान भी दिख रहा है बहुत सारे पेड़ भी है।

यहां पर एक रैक दिखाई दे रहा है।

बैग भी टंगे हुए दिख रहे हैं जिसमें लाल और काले रंग के हैं।

साइड में झालर भी लगी हुई दिख रही है।

अगरबत्तियां भी दिखाई दे रही है।